देखिये दिखाई दे रहा है एक ऑफिस की पिक्चर है जिसमें सामने एक कैलेंडर हैंगे --

और इस पिक्चर में एक ए.सी और एक फैन भी नजर आ रहा है।

और इसमें बिल्डिंग का अ इनर इनर साइड और आउटर साइड दोनों नजर आ रहे है। सामने एक पेड़ --

ये बिल्डिंग किसी अपार्टमेन्ट जैसी लग रही है और --

बाथ्र- बाथिंग रिचूअल करती नजर आ रही है और काफी लोग है यहाँ पे --

इस पिक्चर में हमे एक बिल्डिंग नजर आ रही है वो बिल्डिंग कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग सी लग रही है।